नमस्कार features of gchem3d के इस tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न के बारे में सीखेंगे
menu bar file type formats
अनेक प्रकार के model types और
background color को कैसे बदलें
इस tutorial के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ ubuntu लिनक्स os version 1204
gchempaint version 01210
gchem3d version 01210
इस tutorial के अनुसरण के लिए आपको gchempaint से परिचित होना चाहिये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
मैंने एक नयी gchempaint window खोली है
templates drop down उपयोग करके
मैं display area पर adenosine adenosine के structure को load करुँगी
file को सेव करने के लिए tool bar पर सेव icon पर click करें
save as dialog box खुलता है
file को gchem3d में देखने के लिए इसे file formats जैसे mol mdl और pdb में सेव करना पड़ता है
file का name adenosine pdb type करें
desktop पर file सेव करने के लिए desktop पर click करें
सेव button पर click करें
मैं gchempaint window बंद करुँगी
अब gchem3d application के बारे में सीखें
gchem3d gchempaint के utility सॉफ्टवेयर की तरह संस्थापित किया जा सकता है
synaptic package manager उपयोग करके
synaptic package manager synaptic package manager पर जाएँ
quick filter quick filter box में gchempaint type करें
gchempaint utilities के पूर्ण संस्थापन के लिए gcuplugin libgcudbg और gcubin संस्थापित करें
मैंने पहले ही सारी files संस्थापित कर ली थी
gchem3d 3 डाइमेंशनल मॉलिक्यूलर structure विज्युलाइज़र visualizer है
यह gchempaint का utility feature है
gchempaint में बनाये गए structures gchem3d में देखे जा सकते हैं
gchem3d खोलने के लिए dash home पर click करें
प्रदर्शित search bar में gchem3d type करें
molecules viewer icon पर click करें
gchem3d viewer window menubar और display area रखती है
menubar वो सभी commands रखती है जिनकी आपको gchem3d में काम करने में ज़रुरत है
display area खुली हुई file की विषयवस्तु प्रदर्शित करता है
file खोलने के लिए file select करें open पर click करें
open dialog box खुलता है
file select करे जो आप खोलना चाहते हैं
मैं अपने desktop पर adenosine pdb select करुँगी
open button पर click करें
displayed area पर file प्रदर्शित हुई है
अब दृश्य को image की तरह सेव करना सीखें
file पर click करें save as image पर जाएँ
save as image dialog box खुलता है
नीचे width और height parameters पर ध्यान दें
default image size width 300 pixels और height 300 pixels रखती है
आप scrollers scrollers उपयोग करके values को बड़ा या घटा सकते हैं
अब file type विकल्प पर
gchem3d अनेक file formats का समर्थन करता है
file types जैसे vrml pdf png और अन्य drop down सूची में उपलब्ध हैं
अगर file का प्रकार नहीं स्पष्ट किया जाता तो gchem3d file के प्रकार को file के name से निर्धारित करने के लिए प्रयास करता है
अगर यह सफल नहीं होता है तो default file type में vrml उपयोग किया जायेगा
अब structure को vrml file format में सेव करें
vrml document विकल्प select करें
file का name adenosine adenosine type करें
desktop पर file सेव करने के लिए desktop पर click करें
सेव button पर click करें
अब हम सीखेंगे कि वास्तव में vrmlफाइल type क्या है
vrml wrl extension के साथ text file format है
3d पालीगान properties जैसे vertices vertices edges edges surface color surface color उल्लिखित किये जा सकते हैं
vrml files plain text हैं जो gzip में compress होती हैं
3d modeling programs objects और scenes को इसमें सेव करते हैं
अब सेव की हुई file को खोलें
adenosine wrl पर right click करें open with text editor विकल्प चुनें
text editor structure के बारे में सारा विवरण दर्शाता है
अब page setup पर जाते हैं
gchem3d printing के समय 300 dpi resolution उपयोग करता है
पेज setup properties gchempaint में properties के समान ही है
इस क्रम में gchempaint tutorials में मैंने पहले ही विचार किया था
मैं window close करुँगी
अब view menu पर जाएँ
view menu select करें
gchem3d निम्न चार model types उपयोग करके एक अणु प्रदर्शित करता है:
balls and sticks balls and sticks * space filling space filling
cylinders cylinders और * wireframe wireframe
balls and sticks default model है
इस model को उपयोग करके multiple bond और correct bond स्थितियों को देखे जा सकते हैं
मैं space filling पर click करुँगी और आप भिन्नता देख सकते हैं
space filling model अणुओं को compact form में दर्शाता है
cylinders model structure को cylindrical pipes की form में दर्शाता है
wireframe model structure का ढांचा दर्शाता है
balls and sticks पर वापस आते हैं
अब हम background color पर जाते हैं
default background color ब्लैक है
view menu select करें background color पर जाएँ
एक menu खुलता है
menu के अंत से custom color select करें
background colour window खुलती है
जो हम चाहते हैं उस रंग को चुनने के लिए यह window अनेक क्षेत्र रखती है
ह्यू hue उपयोग करके hue background color बदल सकते हैं
scroller पर click करें color circle की value और गतिविधि में बदलाव देखें
saturation saturation उपयोग करके हम color की कान्सन्ट्रेशन बदल सकते हैं
value उपयोग करके समान color के भिन्न shades प्राप्त करने के लिए rgb combination बदल सकते हैं
इसके आगे एक eyedropper eyedropper icon के साथ प्रीव्यू box है
eyedropper icon पर click करें
अपने महत्व का color चुनने के लिए color ring पर कहीं भी click करें
ok button पर click करें screen पर background color बदल जाता है
अब सारांशित करते हैं कि हमने क्या सीखा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
भिन्न menus file type formats
model types और background color कैसे बदलें
यहाँ एक नियत कार्य है
1 gchempaint से saccharide load करें और file को mdl format में सेव करें
2 molecules viewer मॉलेक्युल्स व्यूअर में structure खोलें
3 image को png और pdf file types में सेव करें
4 अनेक background colors का प्रयास करें
इस url पर उपलब्ध video देखें